यह दृश्य एक बुक स्टोर का है यहां पे बहुत सारे बुक है यहां पर एक व्यक्ति है जो--

ब्लैक ब्लू रंग का शर्ट पहना और ब्लैक रंग का पेंट पहना हुआ वहां उनके बगल में बहुत सारे बोतल सब है उनके पीछे।

अ मूर्ति सब है मूर्ति सब बहुत सारे हैं यहां पर बैट भी है यहां पे एक व्यक्ति है।

एक व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा है आई हां अब वहां पर एक पेर के सामने।

शैंपू आ रही है इधर और बाइक सारे आ रहे हैं यहां पर एक दो दो औरत थे जिनमें एक औरत।

और दृश्य बहुत अच्छा है दृश्य सुबह का है यहां यहां पर एक दुकान है जो।

वो टीना पर बैठा हुआ है यहां पर बहुत सारे चॉकलेट बिस्किट सब है जैसे में एक कुरकुरे यस बाबा।

एक वहां पर एक दरवाजे हैं उन पर एक घड़ी है और उनके नीचे एक बोतल है जो पानी पीने वाला।

ये है जो गमछे से लपटा हुआ है यहां पर एक टेबल है।

टेबल प मूर्ति है और लकड़ी सब है यहां प यहां प बहुत सारे--

यह यह डृश्य बहुत अच्छा है यह डृश्य सुबह का है यहां पर एक मन्दिल है जो बहुत अच्छा है जो --

और साइकिल भी है और उनके पीछे एक मोटरसाइकिल भी है और ये एक व्यक्ति जो टेंपो का पैसा दे रहा--

जिम कर रहा है यह एक व्यक्ति जो आ एक व्यक्ति जो खड़ा है ये वह एक व्यक्ति जो काला रंग का टी-शर्ट पेहना है काला रंग का पैंट पेहना है।

यह जिसे बहुत अच्छा है एक जेसे एक दुकान का है यहां यह यह एक हार्डवेयर का दुकान है।

इनमें बहुत सारे पंखे हैं गैस है मोटर है और उनके नीचे पेंट सब है।

एक चश्मा पेहना हुआ है यहां बाहर के समीप एक छोटा सा--

यह दृश्य बहुत अच्छा है यह दृश्य एक जीम का है यहां पर एक व्यक्ति फोटो खींच रहा है।

आम सफेद रंग का गंजी पहना हुआ है ब्लू रंग का पेंट पहना हुआ है।

यह दॄश्य बहुत अच्छा है यह दृशय सुबह का हैयह पर एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है जो।

यहां पर बहोत सारे व्यक्ति हैं यहां पर एक गेंडा है जो सफेद रंग का है।

इन पर एक बच्चा बैठा हुआ है जो ब्लू रंग का टीशर्ट पहना हुआ और।

यह दृश्य बहोत अच्छा है यह दृश्य सुबह का है यह यहां पर एक ट्रक है जो कि लाल रंग का हा है।

यहां पर एक सफेद लहेंगा शॉर्ट पहना हुआ हैं काला रंग--

कंप्यूटर है और उनके साथ सी_पी_यू भी है और उनके साथ कीबोर्ड भी है और उनके साथ माउ--